यहां पे एक एरिया में पूरे हर तरफ बॉडर में अह पतरे डाले हुए है।

यहाँ पे कुछ ऑफिस कंस्ट्रक्शन का काम चालू है।

और आजू बाजू पूरा जंगल जैसा दिखाई दे रहा--

जहां पे लाइन से सारे घर जो है एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर से किया है बहोत सारे डोर्स दिखाई दे रहे हैं।

जो गोल गोल घूम रहा हैं और ये अल बी अ सळाई से जो अ जो--

है उसे लटकाया हुआ है और बीच में बहोत बड़ा बंम अ एक स्टैंड है।

और बहोत सारे लोग बैठे हुए है जो सीट है वो येल्लो ग्रीन रेड ब्लू कलर का बनाया है।

और बीच में कुछ सर्किल का मिरर दिखाई दे रहा है और साइड में जो है।

और मस्का बन मैगी और भजिया का दिखाई दिया है फोटोस ।

और कुछ पाउडर वाऊडर दिखाई दे रहा है पैकेट में और एक डोर दिखाई दे रहा है ग्लास का।

और जो बा बाहर जो है एक कार दिखाई दे रही है।

और एक चेयर और दिखाई दे रहा है और एक कांच का कुछ दिया हुआ है कंटेन जैसे करने का उसके अंदर बहुत सारे --

यहां पे एक अंकल जो है वो ड्रिलिंग मशीन से कुछ और निकल रहे हैं।

उसके ऊपर से चलने के लिए साइड में बीच में भी और साइड में भी डाला हुआ है।

बीच बीच में कलर कलर ऐसे कुछ तो आ रहा है यहां पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ब्रिज जैसे मेरे को लग रहा है।

और अ कुछ ऊपर ब्रिज जैसे जो बनाते है वो बनाया हुआ है।

और आजू बाजू जो हैं बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे फैंस दिखाई दे रहे है।

बहोत सारे कमान जैसे लगाया अ कय किवय किए हुए हैं और बहोत सारे पार्टीशन्श है जिसके अंदर बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

और घर के सामने दो नू पेड़ दिखाई दे रहे हैं और--

एक मंदिर जैसे दिखाई दे रहा है जहां पर दो बीच में--

तो अंकल लोग दिखाई दे रहे है और साइड में जो है अ --

बहोत ही गंदगी फैली हुई है और बोट दिखाई दे रहा है बहोत सारे --

हर एक अंकल जो बैठे हैं और एक अंकल खड़े हैं और एक बकेट दिखाई दे रही है नीचे जो है कार --

और ग्रास के बीच बीच में पानी भी दिखाई दे रहा है और कीचड़ भी दिख रहा है।

और दुकान दिखाई दे रहा है एक शटर दिखाई दे रहा है।

बैनर के पास एक पत्थर दिख रहा है और साइड में शूज है और ऊपर बैनर है।

यहां पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पे अ स्टील से उसका अ बॉर्डर बनाया हुआ है।

ग्रीन कलर दिख रहा है और एक गेट दिखाई दे रहा है और सिल्वर कलर का--

और एक फ़िल्टर दिखाई दे रही है और एक खिड़की दिख रहा है।

और उसके बाजू में पर्दा लगाया है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और कैची दिख रहा है चेयर्स दिख रहे है और एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और--

और बहोत सारे चेयर लगाया हुआ है स अ रेस्टोरेंट के बाहर।

और रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे चेयर और डाइनिंग टेबल सजाए गए हैं।

यहां पे एक गार्डन दिखाई दे रहा है। जहां पे बीच में एक सर्कल में फवारा दिखाई दे रहा है।

और इसके आजु बाजु बहुत सारा ग्रास उगा हुआ है।